ये एक दुकान है। दुकान के अंदर एक --

और बहोत सारी मशीन्स नजर आ रही हैं। जैसे एक मशीन सामने नजर आ रही है। जिसके उपर हम भाग सकते हैं। चल सकते हैं।

और ये इमारत की तैयारी कर रहे हैं।

जहाँ पे बहोत सारी मच्छियाँ नजर आ रही है।

और होटल में हमलोग ठहर सकते हैं।

छल्ले नज़र आ रहे हैं। बैग्स है जो स्कूल के बैग होते हैं किट बैग होते हैं।

ऐं बहुत सारे लोग बाजार जाते हैं मच्छी लेके आते हैं।

ये एक बैकेरी और मठियाई की दुकान है।

और रोज़ की ज़िन्दगी में बरतने बर बरतने वाला जैसे --

ये पार्क की फोटो है। बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं। बैठने के लिए भी यहां पे --

और बहोत सारे पेड़ हैं द्रखत हैं।

और छोटे-छोटे पौधे हैं हरे भरे।